इसमें नीचे अ अह मैदान दिखाई दे रहा है।

इसमें एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिसमें एमबी ट्रैवल्स लिखा हुआ है।

यह एक रोड जला हुआ दिखाई दे रहा है जिसमें बगल में बहुत सारी घास लगी हुई दिख रही है।

एस_आर मोटर्स की दुकान दिखाई दे रही है इनमें ऊपर बैनर लगा हुआ दिख रहा है।

ये एक मैदान दिखाई दे रहा है जिसमें एक अशोक चक्र बना हुआ है।

ऊपर कुछ लाइटे जलती हुई दिख रही है और ऊपर शटर भी खुली हुई दिखाई दे रही है।